सामने में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ पीछे में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे और यहाँ पे लोग भी हैं ।

यहाँ पे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है। यहाँ पे बच्चे लोग जो पढाई कर रहे है और वहां सामने में एक जेंट्स है जो पढ़ा रहे है।

और यहाँ पे बहुत सारे है जो गिफ्ट और यहाँ पे कुछ अच्छे-अच्छे गिफ्ट ऊपर में रखे हुए दिखाई दे रहे और बहुत सारे गिफ्ट है जो रखा हुआ है यहाँ पे ।

और सब बैठे हुए हैं साइड में एक लेडीज इधर साइड में खड़ी है माइक में कुछ बोल रही है और --

यहाँ गैलरी दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा है यहाँ ।

वो जो पिला और ग्रीन कलर में और यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी नारियल के पेड़-पौधे जैसे पीछे में दिखाई दे रहा है।

ये लोग की तरफ देख रहे हैं।

और उस पार मेरा ही घर दिखाई दे रहा है जो हल्का-हल्का कलर में भी दिखाई दे रहा है वहां पे।

और ये में एक बाइक पे जा रहे हैं।

और यहां दूर उधर में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा है और यहां पे --

और अंदर में एक लाइट जल रही है और एक लाइट है जल रही है कुछ सामने में बुक्स वगेरा जैसे रखा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर में अँधेरा-अँधेरा दिखाई दे रहा --